कुछ बैलून दिखाई दे रहे है और सीढ़ी नजर आ रहे है।

रोड पर वाहन खड़े हुए नजर आ रहे है।

दो आदमी सफ़ेद रंग की शर्ट पहन कर खड़े हुए हैं पीछे एक नाव दिखाई दे रही है एक बांस भी दिखाई दे रहा है।

एक नील रंग का लोहे का गेट नजर आ रहा है जिस पर एक पोस्टर लगा हुआ है | पोस्टर पर लांड्री लैब वी केयर योर फैब्रिक् --

एक लाल रंग की ट्राॅली नजर आ रही है।

एक हलके हरे रंग की ईमारत नजर आ रही है जिस पर लाल पटियां भी दिखाई दे रहीं हैं।

पीछे आसमान भी दिखाई दे रहा है।

कुछ कन्या दिखाई दे रहे हैं।

एक बड़ा बोर्ड नजर आ रहा है जिसपर डिपार्टमेंट ऑफ़ पोस्ट --

एक नारंगी रंग की ईट की ईमारत दिखाई दे रही है।

जिन पर लड़कियां बैठी हुई दिखाई दे रही हैं।

दो झूमर दिखाई दे रहें हैं।

गेट के पास कुछ सफ़ेद रंग के फूल नजर आ रहें हैं।

एक बछड़ा दिखाई दे रहा है।

दो ए.सी. नजर आ रहे है।

एक बड़ा पुस्तकालय नजर आ रहा है।